गाड़ी खड़ी हुई है तार लगे हुए है एक खंभा है बिजली का नीचे ओ साइड में पेड़ लगे हुए है लकड़ी --